सामने एक छोटा सा डब्बा है।

सामने रिसेप्शन टेबल पर दो व्यक्ति फ़ोन में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं।

बाहर दो हरे रंग के डस्टबिन और कुछ--

जीसके बाहर एक जीप एक काले रंग की गाड़ी और एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

एक व्यक्ती जाता हुआ नज़र आ रहा है।

इस चित्र में पत्थरों से बनी हुई एक बड़ी सी इमारत नजर आ रही है।

टेज के ऊपर छोटा सा पीले रंग का साइनेज बोर्ड नजर आ रहा है।